--और वहां पर डांस चल रहा है और एक झन वीडियो भी बना रहा है और बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पेड़-पौधे हैं हरा-भरा बहुत दिखाई देरा है और एक गाय भी है और खूटा सामने में दिखाई दे रहा है आगे और तार भी लग--